और जो की काफी बड़ी बिक बुक स्टोर है और यहाँ पे बहोत सारे लोग है जो की यहाँ पर बैठे हुए है लाइब्रेरी है ये --

और यहाँ पर कुछ अ पेप्सी वगेरा रखी हुई है और यहाँ पर एक अ इलेक्ट्रॉनिक अ तराजू है।

और जो की कुछ अ अजी उम उम शो पीस है और रखे हुए है बड़े-बड़े और कुछ यहाँ पे लाइट जल रही है एक गेट लगा हुआ है।

और जिसका गेड है वो अभी बंद है वाइट कलर का है गेड और यहाँ पे पेड़ लगे हुए है बहोत सारे पेड़ लगे हुए है यहाँ पर --